आते रात होगिसे दुकान मन भी ह बंद होगिसे गाड़ी उडी कुछ नई चालत हे आदमी मन भी कुछ नई दिखत हे एक ठो ए जगह घर है हरा हरा कलर का

--मेन रोड तो नई है लकिन रोड है और इतना चालत फिरत नई है आदमी मन अगल बग़ल में आदमी हैं गाड़ी उतना नई चलत हे किराना दुकान हय अगल बगल में घर हय पेड़ पौधा हय।

--बरसात का दिन है रोड है लकिन कीचर बोहुत है रोड मन एकदम ख़राब है पूरा गांव दर परेशानी होत हुई।

ये एक पार्क है पार्क की बीच में में प यह पेड़ पौधा लगल है पूरा फुल फूल मंडी गिरी से साफ है मौसम